व इसके टायर काले हैं।

इसके सामने एक आदमी फोटो खिंचवा रहा है जिसने पीले कलर का कुर्ता पेहना है।

नीचे दो फौजी हैं ब बहुत सारी जनता खड़ी है।

पीछे काफी सारी मशीने व जिम का बैनर भी लगा हुआ है।

आ ऊपर से गैप बने हुए हैं दीवार में।

गाड़ी के सामने सफेद कलर का आगे का बंपर पड़ा हुआ है।

वह फॉर्मल पैंट पहना हुआ है।

जो कि पंजाब नेशनल बैंक के पास है शामली से।

साइड में एक दुकान है जो बंद है उसके सामने बड़ी सी कुर्सी खड़ी हुई है।